छह लोग एक्सोसाइज कर रहे हैं पेट बाल लेट कर अपने पैर को पकड़े हुए हैं।

यह बहुत बड़ा हॉल है यह हॉल पिलर के सहारे खड़ा है।

एक व्यक्ति मोबाईल से बात करा रहा है सलून के बहार एक मोटरसाइकिल है सलून के अंदर दो तीन कुर्सियां भी लगी हुई है और कुछ कपडे भी टंगे गए हैं।

एक व्यक्ति ब्लू कलर की पैंट और आर्मी ड्रेस की शर्ट में कपड़ा प्रेस कर रहा है उसके पास एक आयरन है और आयरन के नीचे एक शर्ट है।

इस छत को ढलाई के लिए तैयार किया जा रहा है छत को सरिया और पटरी से पूरी तरह से बांधा गया है।

और इसके अदर भी कुछ मोटर सायकल रखी गई है एक तरफ एक आदमी खडा हैमोटर सायकल के दुकान के अगल बगल कुछ लिखा गया है।

यह एक बड़ा सा मकान हैं मकान को उजले रंग से रंगा गया हैं और इसके पट्टी को हल्के भूरे रंग से रंगा गया हैं ।

इसके बहार तीन दो पहिया वाहन भी खड़ी है एक दो पहिया वाहन में हेलमेट लगा हुआ है इस बैंक के ऊपर बैंक का पोस्टर भी लगा हुआ है।